और इसमें कुछ कैमरे और एक पंखा और ए_सी भी लगा हुआ है।

यह एक बहुत ही अच्छा घर है जिसके अंदर बहुत सी अच्छे अच्छे पेंटिंग बनाई हुई है।

और छत में कुछ लाइट भी लगी है जिसके अंदर कुछ आदमी खड़े हैं और एक आदमी चेयर पर बैठा है और इसके अंदर बहुत सी कुर्सियां भी रखी हुई है।

और बहुत सी सजावट और डेकोरेशन की गई है।

और इस दुकान के बाहर एक बोर्ड भी लगा है जिस पर बस्तर डेयरी फार्म लिखा हुआ है।

और इस दुकान के अंदर काउंटर भी रखे हैं जिन पर एक कढ़ाई और कुछ अन्य सामान रखा है।

और कुछ बुक्स स्टीकर वाली रखी हुई है और इसके अंदर कुछ रंग बिरंगे पर्दे भी लगे हुए हैं।